जिसमें काफी सारी बस खड़ी हुई है तथा काफी बस --

यहां पर तो किसी शादी या किसी अन्य फंक्शन का है जिसमें जिसमें एक घर की--

झूमर लटके हुए हैं जो काफी शानदार है।

जिसका पानी काफी साफ है तथा--

यह फोटो बस स्टैंड का है।

जिसकी दीवालों का कलर सफेद है।

यह फोटो किसी क्लास के अंदर का है जिसमें चार लाइन से ब्रैंचें लगी हुई हैं।

इस फोटो में काफी पहाड़ भी दिख रहे हैं।

यह फोटो किसी दुकान का है जिसमें--

दुकान के दीवारों का कलर ग्रीन है।

इस फोटो में काफी ऊंचे ऊंचे टीले दिख रहे हैं तथा उनके भी--

यह दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है।

यह एक फूलों की काफी बड़ी दुकान प्रतीत होती है जिसमें--

काफी व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यूनिवर्सिटी को जा रही हैं तथा यूनिवर्सिटी के बाहर एक--

जिस पर लिखा है लेडिस फैशन फर्स्ट कलेक्टर ।